यहाँ पर पन्द्र सत्रह किस्म की मछली बा।

लोकर वाकर टायप का बना हुआ है पकरे खातिर।

आइसक्रीम वाला फ्रिज के ऊपर रखा--